यहां पर भी काम चल रहा है। यहां एक मशीन लगी हुई है जिसपे एक खम्मा जैसा बना हुआ है और ब अ अ इसमे बोहत सारी पेटी एटी भी पड़ी हुई है।

यह किसी का घर बना हुआ है पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ है।

रखे हुए लकड़ी के सिर्फ वाटर बोतल ही रखे हुए है और एक पीछे से वो लम्बा सा रखा हुआ है | उधर लाइट भी जल रही है रंग बिरंगी।

इसमें दो तीन एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है वो जो पेड़ ब पौधे लगे हुए हैं इनमें ईटों का चक्रवियुह बनाया गया है ओ --

आगे डेस्क भी रखीं हुई हैं कुछ ब्लैक कलर की कुर्सियां भी रखी हुई हैं जहां पे कुछ लोग बैठे बैठे कुछ खा- पी भी रहे हैं जहाँ गमले भी रखे हुए --

पेचे के तरफ एक-अ को दुकां जैसी कुछ सामान उसपे भरा हुआ वह कांच हे कसीदा ऐसे लगा हुआ है और आगे फर्श पड़ी हुई है।

यहाँ ब्रिज है। ब्रिज के ऊपर एक काम चल रहा है जिस में कुछ मशीन खड़े हुई है और ये ब्रिज पूरी तरह से बना भी नही है उसके तरफ एक अ-नदी सी बहती हुई नजर आ रही है और कु --

हैं दुकान लग रही है इसमें कारे बंधी है कुछ कार ओ के आगे का हिस्सा खुला हुआ है और कुछ लेबर बना भी रहे है बहोत सारे और पाने भी बहोत सारे पड़े हुए है।